यहाँ पर कुछ मूर्तियां बनी हुई है जो दिखाई दे रही है जो हाथ मे त्रिशूल और चाकू लिए खड़ी हुई है कुछ मूर्ति--

जो दिखाई दे रहे है झालर लगी हुई है जो दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक ग्राउंड में कुछ हरियाली लगी हुई है कुछ पेड़ लगे हुये है जो दिखाई दे रहे है ग्राउंड के चारों ओर जाली लगी हुई है जो दिख रही है।

एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर गुंबज बनी हुई है यह काफी पुराना मंदिर लग रहा है।

यहाँ पर कुछ पेड़-पौधे लगे हुए है जो दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर- यहाँ पर टेंट मे कुछ लटका हुआ है जो दिखाई दे रहा है कुछ लाईटें लगी हुई है जो दिखाई दे रही है।

यहाँ पर लकड़ी पर कुछ बगुले बैठे हुए है जो दिखाई दे रहे है बाहर कुछ हरियाली दिखाई दे रही है कुछ घर दिखाई दे रहे है एक व्यक्ति दिख रहा है।

यहाँ पर कुछ पानी यहाँ पर कुछ पानी बह रहा है जो दिखाई दे रहा है पत्थर डले हुए है जो दिखाई दे रहे है।